बाहर मे एक आदमी भी दिखाई दे रहा है उपर जाने के लिए सीढ़ियां भी लगाई गई है।

ये अंदर मे लाइट भी लगा हुआ है।

लाल और सफेद कलर के बैलून से डेकोरेट किया गया है जिसमें लिखा गया हैप्पी बर्थडे ।

व नीचे लोहे का कुछ दिखाई दे रहा है।

दुकान में बहोत सारी मूर्तिएं खड़ी है मूर्तिएं में रंग बिरंगे कपड़े पहने गए हैं।

हरा कलर का भी कुछ रखा हुआ है।

कुछ आदमी के हाथ में कुछ कुछ सामान है।

यह आदमी चप्पल पहना हुआ है।

बहुत ही बड़ा पत्थर का गुफा जैसी कुछ बना हुआ है।

बहोत सारा लाइट भी दिख रहा है और पंखे भी लगाए गए हैं।

इधर साइड में थोड़ा सा प्लास्टिक फूल से सजाया गया है।

पे बहोत सारे छोटे बड़े पोस्टर भी लगाए गए हैं।

यहां पे हरे और लाल रंग की दरी बिछाई गई है नीचे में।

इसके अगल बगल में लाइट भी लगाई गई है।

रोड के किनारे हरे भरे छोटे छोटे एक लाइनिंग जैसे पौधे बहुत सारे हैं जो बहुत ही खूबसूरत हैं।

यह एक मन्यारी का दुकान है यहां पे बहुत सारी सामान रखी हुई है।

यहां पे बहुत बड़ा पत्थर दिखाई दे रहा हैं।

कुछ आदमी इधर सामान ले रहे हैं बहुत सारा टेंट लगा हुआ है।

यहां पे बहोत बड़ी मां की मूर्ति है और उसके बगल बगल में भी बहोत सारी छोटी छोटी मूर्तियां हैं।